अ टीन का शेड डला हुआ है। अंग्रेजी आयुर्वेदिक लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इमेज में पेट्रोल पंप नजर आ रहा है। पेट्रोल पंप के ऑफिस पर पुष्पा उपाध्याय फिलिंग सेंटर लिखा हुआ दिख रहा है। अ- दो बाइक खड़ी हुई है।

इमेज में बिल्डिंग दिखाई दे रही है | बिल्डिंग पर खिड़की बनी हुई हैं | अ सडक पर ऑटो और कार खड़ी हुई हैं | अ खंबा लगा है।

इमेज में एक रूम दिखाई दे रहा है। रूम में बेड रखा है बेड पर पिलो और ब्लैंकेट रखे हुए हैं दो लाल कलर की --

जुड़े हुए खड़े हैं | अ दीवार पर घड़ी लगीं हुई है| अ परदे डले हुए नजर आ रहे हैं।

अ कुछ और लड़के खड़े दिखाई दे रहे हैं। अ- गार्डन में हरे रंग की घास उगीं हुई है। अ- झंडे लगे हैं। पेड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक का समान रखा हुआ है। सडक पर बाइक और स्कुटी खड़ी है। एक लेडीज मास्क पहने हुए जा रही है।

वो एक पिंक कलर की टॉय ट्रेन लगी हुई है। ट्रेन की पटरियाँ बनी हुई हैं | पेड़ पोधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इमेज में नदी बहती हुई नजर आ रही है। पत्थर और बड़ी बड़ी चट्टानें दिख रहे है। पहाड़ दिख रहा है।